जिम दिख रहा है यहाँ पे सभी स्टाइलिश लग रहा है उसकी बॉडी दिखने लायक बन रही है सिक्स एब पैक्स भी बनाए--